ये एक फर्नीचर की दुकान लग रही है।

यहां एक गार्डन जैसा दिख रहा है जहां पे स्कूल के बच्चों को खिलाया जा रहा है।

आसपास देखे पेड़ ही पेड़ पौधे दिख रहे--

मैम डांट लगा रही है ये दिख रहा है।

यहां पे हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है।

यहां पे लोग कुछ आते जाते दिख रहे हैं।

डस्टबिन दिख रहा है हमें।

ये एक बिल्डिंग जैसी है। बिल्डिंग जैसा हॉस्पिटल है।

और इधर को साइड में पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां पे कोई नर्सरी जैसा दिखाई दे रहा हैं तथा उसका पेड़ उगाया जाते--

नीचे घास पड़ी हुई है आसपास पेड़े पौधे हैं जो रहे है।

उसके पीछे एक वाइट कलर की कार आती हुई दिख रही है।

पीछे कोई बिल्डिंग या हॉस्पिटल है।

संदूक के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर जैसे रखे हुए हैं।

साथ मे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है।

अ बस में लिखा है बंदेरपुर टाइगर रिसेव ।

कुछ गाड़ियां दिख रही हैं कुछ बाइक्स दिख रही हैं।

एक ब्लैक कलर का पोस्टर बना हुआ है।

पेड़ के साइड साइड रेलिंग खड़ी हुई है।

पेड़ के नीचे तो साइकिल खड़ी हुई हैं।

कुछ मीनार जैसा बना हुआ दिख रहा है।

इसमें बेकरी है हमको लग रहा।

दुकान में हमें दिख रहा है पानी रखा हुआ दिख रहा है।

और ये कुछ हल्दी मिर्च ये सब समान दिख रहा है।

कुछ हैंगर में टंगा हुआ दिख रहा है।

पीछे किसी चीज का पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पर एक लड़की दिख रही है।

नदी दिख रही है लोग आसपास खड़े हैं पूजा कर रहे हैं।

बैलून टंगे हुए देखो कितने सारे दिख रहे--

औ कुछ लोग अंदर खड़े हुए दिख रहे हैं।

और चारों तरफ यही सब दिख रहा है।

नीचे फ्लोर दिख रहा है।

साइड साइड रेलिंग लगी हुई है।

और ये फ्लैग लगा हुआ है।

यहां पर गमले खड़े हैं कुछ उसमें कुछ इसमे रंग बिरंगे फूल हैं।

और सामने एक गम बंगला जैसा बना है।

आस पास भी ये मार्केट जैसे सब दिख रहे हैं।